उसके ठीक सामने कुर्सी भी है कुछ पुस्तके भी --

यह एक दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार के सामान उपलब्ध है।

उसके पीछे आसमान साफ है।

यह एक कपड़े की दुकान है जिसमें महिलाओं के पहनने के लिए बहुत सारी सामान उपलब्ध है।

यह एक क्लास रूम का तस्वीर है जिसमें एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

टीचर के ठीक सामने एक पोडियम है।

यहां एक मैकेनिक गाड़ी को ठीक करते हुए नजर आ रहा है।

उपर अविनाश कंपलेक्स लिखा हुआ है।

यह एक पार्क है जिसमें एक महापुरुष की मूर्ति बनाई गई है।

यह झारखंड मंत्रालय के ऑफिस से इसके बाहर स्ट्रीट लाइट नजर आ रही है।

नृत्य के गान को सुनने के लिए बॉक्स भी लगाया गया है।

कुछ बच्चे बेंच के ऊपर बैठे हैं उनके पास बैग है कलम है पुस्तकें हैं।

गाड़ी के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं।

जल के ठीक बहुत दूर एक पहाड़ है।

ऊपर काले रंग की लड़कियों से सजाया गया है।

यहां कुछ गमला भी है।

डिब्बा भी दिख रहा है।

चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया गया है।

ऊपर कुछ लाइटें भी लगी हैं।

यह एक रूम है जिसमें एक टेबल है।